ये एक कुत्ते को चेक कर रहे हैं लग रहा हैं कुछ क्या कुत्ते का ऑपरेशन कर रे हैं गुल --

ये कार खड़ी हुई है इसका एलाइनमेंट कर रहे हैं और इसका गेट खुला हुआ है और आसपास में कुछ लाइटें लगी हुई हैं।